एवं गाड़ियों की संख्या एवं साईकलों की संख्या भी काफी अधिक हैं ।

यह नदी है नदी में एक छोटा-सा पुल बनाया गया है जिस पर सिर्फ पैदल यात्री एवं बाइक सवार यानि दो चक्के --